पेयर भी बनी हुई है और पीछे बिल्डिंग बनी हुई है।

उसके अंदर एक पुल बना हुआ है और बाहर एक लड़का--

वाइट कलर का मंदिर बना हुआ है और बहुत से पेड़ हैं जो ग्रीन कलर के दिख रहे हैं।

एक पेड़ आगे है जो केले का है।

अलग अलग कलर की शेरवानी दिख रही हैं जो बहोत सुंदर दिख रहीं हैं।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

यह एक गंगा जी का दृश्य यहां पर लोग गंगा जी नाने आए हैं कुछ जेंट्स हैं।

यह एक पहाड़ी इलाका है जहां पर पीछे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं।

यह एक पूजा की जगह पे है जहां आदमी और औरत बैठ कर पूजा कर रहे--

और यहां पर पीछे आह सामने एक मूर्ति भी लगी हुई है जो पूजा के लिए रखी है।

एक आदमी ढोलक बजा रहा है और एक आदमी बाजा बजा रहा है वह भी रेड कलर का है।

पानी का कलर ब्लू कलर का दिख रहा है।

यह किसी गेट का दृश्य है जो गेट को डेकोरेट किया गया है। उसके बाहर एक लड़का खड़ा है। जिसने ब्लैक कलर का कुर्ता पहन रखा है।

यह एक डांस अकैडमी का दृश्य है यहां पर बच्चे--

और कुछ येलो कलर के हैं और कुछ ऑरेंज कलर के हैं और कुछ वाइट कलर के दिख रही है।

यह एक छट पूजा का दृश्य है जहां पर बिहारी लोग अपनी छट पूजा करते हैं।

जीन्होंने अपना मुंह ढक रखा है और एक लड़की खड़ी है।

इसके बाल खुले हुए हैं उसने ब्लैक और रेड कलर की--

यह किसी दुकान का दृश्य है जहां पर बहुत सारे बच्चों के--

उसका टायर भी निकला हुआ काफी पुरानी गाड़ी दिख रही है।

खूब घने पेड़ दिखाई दे रहे हैं और कुछ बड़े बड़े पत्थर भी दिखाई दे रहे हैं।

यह एक स्विमिंग पूल का दृश्य है जहां पर तीन स्विमिंग पूल बने हुए हैं।

और एक जगह से बाउंड्री दिख रही है जो बहुत छोटी-छोटी दिख रही है।

कुछ लोग बैठ के खाना खा रहे हैं और कुछ लोग खड़े होकर खाना खा रहे--

और एक लड़की बॉल मार रही है बैट पकड़े हुए है और दूसरी लड़की विकेट के पीछे खड़ी हुई है।

यहां पर एक बड़ी सी कुर्सी पड़ी हुई है।

लकड़ी की देख रही है और जो लकड़ी की डिजाइन उस पर बनी हुईं हैं।

ब्लैक कलर का स्टेज बना हुआ है और बहुत सारे ब्लैक कलर के डेग भी रखे हुए हैं।

यह किसी शादी का दृश्य है जहां पर टेबल भी रखी हुई हैं।

और एक लेडी और एक जेंट्स बैठे हुए दिख रहे हैं।

सबने से सफेद टोपी लगा रखी है एक आदमी गुलाबी कलर की शर्ट में है और नीले कलर की पेंट में है।

यह एक रूम का दृश्य है जहां पर डबल बेड पड़ा हुआ है।

कंबल है कम बेड पर डबल बेड और दो पिलो पड़े हुए हैं।

यह एक रेडीमेड कपड़ों की दुकान है जहां पर ऊन भी--

जो पुलिस की कतार में है जिन्होंने लाल रंग की टोपी लगा रखी है सिर पे और पुलिस के कपड़े पहन रखे हैं।

यहाँ पर एक पठरी दिखाई दे रही है स्टेशन के पीछे एक बिल्डिंग बनी हुई है जिस पर दो टंकी रखी है ब्लैक कलर की--

और उ घर के बाहर मैदान पड़ा हुआ है।

ये एक जे_सी_बी मशीन है जो बड़ा सा गड्ढा हो रही है।